पूरा हरियाली है इतना अच्छा है नदी आ तालाब और उसके ऊपर में आसमान में इतना अच्छा सूर्य उदय हुआ है बहुत अच्छा लगरा।

बहुत सारी दीदी और भैया लोग मछली बेच रहे हैं और कोई भैया फोन से बात भी कर रहे हैं।

बाहर खड़ा होके फोटो खिंचवा रहा है वहां पर पोस्टर लगा--